इसमें कोई व्यक्ति नहीं है और यह साफ साफ दिखाई दे रहा है।

और एक भक्त भी बैठा हुआ है और हनुमान जी भी बैठे है बोलो हनुमान जी महाराज की जय--

इसमे खुर्सिया भी रखी हुई है और टेबल भी लगी हुई है।

कांच का दरवाजा भी लगा हुए और एक बाइक चल रही है तथा एक बाइक खड़ी हुई है।

और नीचे बहुत सारी शाइनिंग भी हो रही है ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है।

इसमें पानी भी लग रहा है और ये बहुत ही साफ सच्चा रेलवे स्टेशन दिख रहा है।

जो की बहुत अच्छी हरियाली तथा साफ सफाई दिख रही है इसमें एक बिल्डिंग है जो की चार पांच मंजिल की दिख रही है।